ऊपर लगे हुए फैन दिखाई दे रहे हैं लाइट नजर आ रही है जल रही है।

पे क्रीम्स रखी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ नीचे का फर्श दिखाई दे रहा --

ईंटों की सीढियाँ बनी हुई दिखाई दे रहीं हैं। यहाँ पर हड़े पेंड़ भी दिखाई दे --